ये एक गेराज है जहा पे बहोत सारे लोहे के सामान रखे हुए है। व्हील वगेरा गाड़ी के टायर वगेरा रखे हुए है और यहा पे कुछ पननिया टँगी हुई है।

कुर्सी टेबल रखी हुई है लाल कुर्सी है काली वाली कुर्सी है और हल्का सा ब्लू कलर गेट का व्यूक लग रहा है इसमे एक पानी का कैंपर रखा हुआ है ब्लू कलर का--

ओर काच के शेड पे छोटी-छोटी मूर्तिया बनाई गई है लाइट जल रही है सफ़ेद कलर की यहाँ पे ऊपर दीवार पे भी सफेद कलर लगा हुआ है और पीछे काच का वो बना हुआ उसमे से पेड़ दिखाई दे रहे है।

--और एक बाइक खड़ी हुई है बाइक का सामने का वो दिखाई दे रहा हेंडल और जो दीवार है उसपे कुछ पीला कलर सा लग--